इस गंगा घाट पर सुबह सुबह बच्चे यहां पर क्रिकेट खेलते हैं और कई परिवार आ के यहाँ पर अपना पिकनिक भी मनाते है।